sbhs का मतलब single board heater system है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: scilab और sbhs के बीच सीरियल संचार सेटअप करना
step test परिक्षण करना
इस ट्यूटोरियल के के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ विंडोज़7 ऑपरेटिंग सिस्टम और scilab 533
आप wwwscilaborg से scilabडाउनलोड कर सकते हैं
scilab संस्थापित करने के लिए
इस ट्यूटोरियल में आगे बदने से पहले आपको introduction to xcos connecting sbhs to computer देख लेना चाहिए
इनके सम्बंधित ट्यूटोरियल्स स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर इस श्रंखला में उपलब्ध हैं
शुरू करने के लिए हमें scilab step test code डाउनलोड करना है अतः एक वेब ब्राउज़र खोलें
एड्रेस बार में टाइप करें oshardwarein sbhs प्रोजेक्ट पर और फिर dpwnloads लिंक पर क्लिक करें
sbhs local code सेक्शन में उपलब्ध फाइल डाउनलोड करें और इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें
ध्यान दें डाउनलोड की हुई फाइल ज़िप फॉर्मेट में होगी
इस फाइल पर राइटक्लिक करें और extract here चुनें
scilab codes local नामक फोल्डर बनेगा
अब हम अपना परिक्षण शुरू करने के लिए तैयार हैं
निश्चित कर लें कि sbhs आपके कंप्यूटर से जुड़ गया है और on हो गया है
सबसे पहले हम चेक करेंगे कि sbhs को communication port नंबर असाइन किया गया है
यह करने के लिए my computer पर राइट क्लिक करें और फिर properties पर क्लिक करें
एक विंडो खुलेगी इस विंडो में device manager पर क्लिक करें
कृपया ध्यान दें कि विंडोज़ 7 की दिखावट अन्य विंडोज़ वर्शन बिल्कुल से अलग है
आपको उन स्टेप्स को रूपांतरित करने की भी ज़रुरत हो सकती है जो मैं आपके विंडोज़ वर्शन के अनुकूल यहाँ दिखाती हूँ
device manager आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर यंत्रों की एक सूची दिखाएगा
ports com & lpt विकल्प पर जाएँ
यह यहाँ है इसे खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें
यदि आपने rs232 केबल जोड़ लिया है तो communications port com1 को देखें नहीं तो usb serial port को देखें
rs232 कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर ज़्यादातर com1 ही रहता है
usb कनेक्शन के लिए यह कुछ अन्य नंबर भी हो सकता है
उचित com नंबर नोट करें मेरे केस में यह com14 है
कभीकभी usb केबल जोड़ने के बाद आपको एक दो डिजिट का com पोर्ट नंबर मिलता है
सीरियल टूल बॉक्स जो आपके बोर्ड और कंप्यूटर को जोड़ता है केवल एकडिजिट के पोर्ट नंबर को हैंडल करता है
अतः अपने com port number को बदलना ज़रूरी है
अब मैं आपको com पोर्ट नंबर को बदलने की प्रक्रिया को दिखाती हूँ
उस विशेष com पोर्ट पर डबल क्लिक करें
port settings टैब पर और फिर advanced पर क्लिक करें
com port number ड्राप डाउन मेन्यू में पोर्ट नंबर को किसी अन्य एकडिजिट नंबर में चुनें
windows आपको यह भी दिखा सकती है कि सभी पोर्ट्स इस समय उपयोग में है लेकिन वास्तव में यह केवाल पुराना स्टेटस है
अतः यदि कोई अन्य ubs डिवाइस जुडी हुई नहीं है तो आप बलपूर्वक एक विशेष com पोर्ट नंबर उपयोग कर सकते हैं
इन सेटिंग्स को लागू करने के लिए ok पर क्लिक करें
properties विंडो बंद करने के लिए ok पर क्लिक करें
device manager और शेष विंडोज़ को बंद करें
अब सीखते हैं कि sbhs उपयोग करके step test परिक्षण करने के लिए साईलैब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं
scilab local codes फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पर सेव किया है उसे खोलें
step test फोल्डर खोलें
ser underscore init dot sce फाइल पर जाएँ और उस पर डबल क्लिक करें
यह अपने आप ही scilab लॉन्च करेगा और फाइल को scilab एडिटर में भी खोलेगा
अगर यह फाइल नहीं खोलता है तो file मेन्यु पर फिर open a file पर क्लिक करें
ser underscore init फाइल चुनें और open पर क्लिक करें
scilab workspace पर जाएँ और निम्न कमांड को निष्पादित करें
टाइप करें: get d space dot dot slash common underscore files और एंटर दबाएँ
फिर टाइप करें: exec space dot dot slash common underscore files slash loader dot sce और एंटर दबाएँ
आप देख सकते हैं कि यह मैसेज देता है कि इसने serial port toolbox लोड कर दिया है
scilab एडिटर पर जाएँ
ser underscore init dot sce फाइल में उस लाइन पर जाएँ जो वेरिएबल port2 की वैल्यू पूछता है
port2 वेरिएबल की वैल्यू निर्धारित com port number से बदली जानी है
पोर्ट नंबर उस नंबर से बदलें जो आपने निर्धारित की या जो आपने थोड़ी देर पहले सेट की है
निश्चित करें कि यह सिंगल कोट्स में हो
इस फाइल की विषय वस्तु में कोई अन्य बदलाव नहीं करें
अब file सेव करें
मेन्यु बार पर फाइल को निष्पादित करने के लिए execute बटन पर क्लिक करें
scilab workspace पर आपको com port opened मैसेज मिलेगा
तथापि यह भी संभव है कि आपको एह एरर मैसेज मिले
अब मैं स्लाइड्स उपयोग करके समझाती हूँ कि एक कठिन एरर कैसे हैंडल करते हैं
अब मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ
tcl/tk के केस में सम्बंधित एरर दिखती है sbhs से जुड़े हुए usb केबल को दोबारा जोड़ें और इस फाइल को दोबारा निष्पादित करें
जाँचें यदि com पोर्ट नंबर बदल गया है
यदि यह अभी भी कार्य नहीं करता तो scilab को दोबारा शुरू करें और प्रक्रिया को दोहराएँ
scilab workspace में निम्न कमांड्स निष्पादित करें
टाइप करें: exec space step underscore test dot sci और एंटर दबाएँ
फिर टाइप करें: xcos space step underscore test dot xcos और एंटर दबाएँ
यह step test परिक्षण के लिए बने हुए xcos interface को लॉन्च करेगा
आप blocks पर डबलक्लिक करके block parameters बदल सकते हैं
आपको पहली बार पैरामीटर्स न बदलने की सलाह दी जाती है
xcos विंडो के मेन्यु बार में simulation विकल्प पर क्लिक करें अब start विकल्प चुनें
xcos फाइल को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के बाद तीन ग्राफ्स के साथ एक प्लाट विंडो दिखेगी
पहला ग्राफ heater in percentage है
दूसरा ग्राफ fan in percentage है और
तीसरा ग्राफ temperature in degree celsius है
नोट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ
इमेज में प्रदर्शित की तरह sbhs डिस्प्ले पर fan heater और temperature दिखते हैं
ध्यान दें कि ग्राफ में प्रदर्शित वैल्यूज़ sbhs डिस्प्ले पर प्रदर्शित के समान ही होनी चाहिए
यदि यह केस नहीं है तो इसका मतलब है कि scilab का sbhs के साथ संचारण नहीं होता है
आप यह भी चेक कर सकते हैं यदि संचार leds समय समय पर चमकती हैं
आपको इस इमेज में प्रदर्शित sbhs पर usb कनेक्टर के आगे ये leds मिलेंगी
यह वास्तविक परिक्षण है और परिणामों को देने के लिए कुछ समय लेगा
मैं कुछ समय के लिए रेकॉर्डिंग रोकूंगी
पर्याप्त समय के लिए परिक्षण रन करने के बाद अंतिम ग्राफ्स यहाँ कि तरह प्रदर्शित किये जायेंगे
हम देख सकते हैं कि heat वैल्यू में तापमान ने step change पर प्रतिक्रिया कर ली है
ज़्यादातर प्रक्रिया जो हमने देखी वो केवल एक फाइल को निष्पादित करके पूरी की जा सकती है
मैं आपको यह फाइल दिखाती हूँ step test फोल्डर पर जाएँ
scilab लॉन्च करने के बाद xcos खोलने तक स्टेप्स startsce फाइल उपयोग करके निष्पादित की जा सकती है
मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
आपको start dot sce फाइल का उपयोग करने की सलाह प्रक्रिया की अच्छी समझदारी प्राप्त करने के बाद ही दी जाती है
यह फाइल कल्पना करती है कि ser underscore init dot sce फाइल में दिया गया पोर्ट नंबर सही है
अब परिक्षण बंद करने के लिए xcos विंडो के मन्यु बार में उपलब्ध stop विकल्प पर क्लिक करें
परिक्षण पूरा करने के बाद अब sbhs को रीसेट करते हैं
इसकी दोबारा व्याख्या करने के लिए मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ
चित्र में प्रदर्शित की तरह sbhs पर reset पुश बटन दिया गया है
रीसेट करने के लिए 1 या 2 सेकेंड के लिए reset बटन को दबाएँ और फिर इसे छोड़ें
reset ऑपरेशन heat 0% और fan 100% करता है
तथापि lcd पर दोनों के लिए 0 दिखता है
इस परिक्षण के लिए डेटा फाइल step test फोल्डर में सेव किया जाता है
मैं आपको यह फाइल दिखाती हूँ
डेटा फाइल का नाम time stamp फॉर्मेट में है
डेटाफाइल का नाम year month date hours minutes seconds dot txt कि तरह पढ़ें
अब मैं डेटा फाइल की विषय वस्तु को खोलती और आपको दिखाती हूँ
यह प्रत्येक सैंपल के लिए heat fan और temperature वैल्यूज़ रखता है
अतः यह फाइल विश्लेषण उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती है
इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने scilab और sbhs के बीच serial communication सेट करना सीखा
step test परिक्षण करना सीखा
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी यहाँ प्रदर्शित लिंक पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद